यह एक घर की फोटो है यह एक लंबी सड़क है जहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।

यह एक मॉल है और यहां पे बहोत ट्रैफिक भी लगा हुआ है सड़क के पास में --

नीचे हरी और ग्रीन कलर की दरी बिछी हुई है यहां पे रेड कलर की भी दरी बिछी है येलो कलर की बस भी है यहां पे।

यह एक खांचा बना हुआ है यहां पे एक पासबुक रखी हुई है आर्यस आर_टी_एस की एक ब्लू कलर की बोतल रखी हुई है।

छोटी छोटी रंग बिरंगी चेयर भी रखी हुई है।

यहां छोटे बच्चे योगासन कर रहे हैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं और इधर ये --

और इधर एक ड्रम भी रखा हुआ है नीले कलर का--

कुरकुरे चिप्स और स्टेशनरी के सामान भी रखे हुए हैं यहां कॉपी किताबें बुक भी मिलती है।

यह एक कैफे हैं यहां फूड विलेज है यहां पे एक दीवार पर लड़का और लड़की की पेंटिंग बनी हुई है।

और घास भी बहोत सारी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारी बंद गोभी है।

यह एक शॉप है यहां पे स्कूल की सारे सामान मिलते हैं यहां पे यूनिफॉर्म बैग बुक --

यह बोरावड का रेलवे स्टेशन है यहां पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और पटरी पे कोई ट्रेन भी जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है।

पिंक कलर की बाइक पे बैठा हुआ एक आदमी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और पास में बहोत सारी बाइक भी है और स्कूटी भी खड़ी है।

जो यह बोरियां उठा उठा के अंदर रख रहे हैं गोडाउन में फिर यह यहां से सस्ते में ले जाया जाता --